खाने पीने की चीजें दिखाई दे रहे हैं और सामने बास्किन बी_आर रॉबिंस लिखा हुआ है।

तेल की बॉटलस नमक के पैकेट और भी बहोत सारा समान रखा हुआ है।

सामने शीशा भी लगा हुआ है।

और यहां व्यक्ति खड़े हैं सामने बहोत सारे गेम्स भी लगी हुईं हैं।

यहां एक खुली ग्राउंड है ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े हैं और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।

सामने कुछ काम चल रहा है और यहां बहुत सारी रेत भी दिखाई दे रही है।

ये एक हॉल है हॉल के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं सामने सीढ़ियों पर फूलदान रखा हुआ है।

कुछ डेकोरेशन भी की गई है अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और बहुत सारी लाईटें भी--